ये यहाँ कुछ साठे गन्ने जैसे लगे हुए दिखाई दे रहैं है।

इसमें बहोत सारे गुलाबी कलर के फुल लगे हुए। वे सनफ्लावर जैसे आकार के दिखाई दे रहे है।

एक काला बोर्ड लगा दे रहा है। यहां एक साइड एक खंभे में लाइट वाला खंभा दिखाई दे रहा है।

एक ब्लैक बोर्ड है लगा हुआ उसपे राइटिंग है हिंदी इंग्लिश जैसी दिखाई दे रही है। कुछ एक चूँगा लगा हुआ दिखाई --

खिड़किये दिखाई दे रही हैं बड़े-बड़े हरे-भरे पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चा --

यहां पर एक साथ दो कारे रखे हुए दिखाई दे रही हैं। यहां पर बाउंड्री दिखाई दे रही है। यहां पर हरियाली दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे तंबू लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे --

इस में कुछ खंबे लगे हुए भी दिखाई दे रहें हैं तीन चार कलसा छोटे-बड़े --